इस तस्वीर में दो पेड़ नजर आ रही है।

कुछ पुरुष स्कूल बनाकर बैठे हैं।

का चटाइयां पिछाकर बैठे हुए हैं।

इस तस्वीर में दो-तीन बिल्डिंगे भी नजर आ रही हैं।

तस्वीर में एक साउंड बॉक्स भी है।

चार लाइटें भी चल रही है।

योगा कर रही है सभी लड़कियों के चेहरे पर--

इसमें आर्टिफिशियल फूल भी लगे हुए हैं।

ये तस्वीर में छोटे-छोटे पौधे भी हैं।

ये तस्वीर में एक पुरुष भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में दो बच्चे पढ़ रहे हैं।

एक ए_सी भी नजर आ रही है।

तीन खिड़कियां नजर आ रही है।

एक मैरेज हॉल का लग रहा है।

यह तस्वीर गंगा घाट की लग रही है।

छोटे-छोटे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

मंडप सजा हुआ है--

मंडप में रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं।

इसमें पंडाल भी बना हुआ है।

पुरुष ज्यादा नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में बड़ी-बड़ी इमारतें भी नजर आ रही हैं।

इस बिल्डिंग की बालकनी में रसिया टंगी है।

इस तस्वीर में बर ईटे भी नजर आ रही हैं।

मॉल में बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक पुतला भी है।

शर्ट पेंट पहने हुए हैं असु भी--

इस पार्क में एक टावर भी लगी हुई है।

बहुत सारी पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

या तस्वीर सरक की है ।

इस टेबल पे एक जग भी रखा हुआ है।

टेबल पे सबकी चप्पलें रखी हुई हैं।

बुक स्टोर में काफी संख्या में बुक रखी हुई है।

इस तस्वीर में टूथ बरस भी मिल रही है।

मिकुप म भि रखी हुई है।

इस तस्वीर में चार-पांच पुतले भी नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक लड़का बैठा हुआ है।

यह तस्वीर गेम सेंटर का है।

यह तस्वीर जिम सेंटर का है।

इस तस्वीर में एक बड़ा बॉल भी है।

यह तस्वीर एक तालाब का है।

यह तस्वीर में लंगड़ खिलाया जा रहा है।

सरकी की है सरक पे ----

इस तस्वीर में एक महिला चल रही है।

दो चार पांच पुरुष भी नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में श्रीराम सुपरमार्केट है।

एक छोटा बच्चा भी निजर आ रहा है।

इस तस्वीर में पानी की बोतलें भी रखी हुई हैं।

उपर एक बड़ी गाड़ियां नजर आ रही है इस तस्वीर में--

बगल में खुशली गाड़ियां लगी हुई है।

इस तस्वीर में तीन कुर्सियां रखी हुई हैं।

इस तस्वीर में चार पांच पुरुष स्कूल बनाकर बैठे हुए हैं।

कुछ कुर्सियां खाली पड़ी हैं।

इक की खाली बस नजर आ रही है।

इस तस्वीर में महिला है पुरुष दोनों हैं।

यह तस्वीर जिम फिटनेस का है।

इस तस्वीर में सेलिब्रेशन चल रहा है।

कुछ कुर्सियां खाली भी पड़ी हुई है।

इस तस्वीर में कुमार बो की यू_पी_एस_सी में पी_एस_सी ऑल पी_सी_एस की--

इस तस्वीर में एक पुरुष भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में कुछ बिल्डिंगें नजर आ रही है।

इस तस्वीर में एक छरना भी है।

इस पार्क में हरे भड़े बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

पार्क में छोटे-छोटे पौधे भी लगे हुए हैं।

सब्जी मंडी में पुरुषों की बहुत भीड़ लगी हुई है।

इस तस्वीर में तरह-तरह की सब्जियां मिल रही है।

और गणेश भगवान भी है।

तस्वीर में एक राक्षस भी है।

तग्दीर में कुछ औरतें भी हैं।

इस तस्वीर में कुछ पुरुषे हैं।

तस्वीर में एक ऑटो भी लगी हुई है।

तस्वीर में में एक बड़ी बिल्डिंग है।

इस तस्वीर में तरह-तरह के कपड़े नजर आ रहे हैं।

तीन गाड़ियां लगी हुई है।

इस तस्वीर में दो-चार पैर भी नजर आ रहे हैं।